काफ़ी हरियाली छाई हुई है।

आसमान का रंग नीला और सादा है।

इस फोटो में एक आदमी का हाथ दिख रहा है जो सादे रंग का शर्ट पहना हुआ है।

कमरा का रंग नीला है।

कुछ बाइक की तस्वीर भी दिख रही है।

मौसम काफी सुहाना है आसमान सादा है और नीला।

एक लक्ष्मी जी का फोटो भी दिख रहा है।

यहां एक मीटिंग हो रहा है।

मैनेजर जो सभी को कुछ बता रहा है।

यह एक चाय पत्ती का बागान दिख रहा है।

यहां पर काफी हरियाली छाई हुई है।

यहां दुर्गा पूजा हो रहा है।

मेला में बहोत अधिक संख्या में लोग एकजुट हुए हैं।

आस पास में अंधेरा है।

हीरा कोटा लिखा हुआ एक छोटा सा मंदिल है जिसका ऊपर एक लाल कलर का झंडा है।

काले रंग के टंकी में नॉर्थ ईस्ट लिखा हुआ है।

काला और ग्रे रंग का फर्श है।

दीवार पर कुछ अजीब ओ गरीब तस्वीर बनाया गया है।

यहां पर रेल का पटरी बनाने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है।

छोटा सा लाल रंग का टेबल है।

एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे है।

एक बहोत बड़ा स्टार है जिसका अंदर कुछ पेंटिंग किया गया है।

काफ़ी भीड़ है यहाँ पर।

पीछे कुछ गार्डन भी नजर आ रहे हैं।

दुकान में पीले पीले रंग का कंगन भी है।

यह एक हॉस्पिटल जैसा दिख रहा है और नीले नीले रंग का बोर्ड में अलग अलग चीज लिखा हुआ है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है।

दिन का समय है नीचे घास फूस है और पानी है और आसपास काफी बड़े पे पो पौधे दिख रहे हैं।

कुछ बेचने वाले लोग हैं कुछ खरीदने वाले लोग हैं।

बाजार के पीछे कुछ बड़े पौधे भी हैं और एक पीले रंग का घर भी है।

यह एक ए_टी_एम मशीन है।

यह बहुत छोटा सा कमरा है।

लाल रंग का एक टेबल पंखा है।

कुछ छोटे पौधे कुछ बड़े पौधे हैं।

यहां पर सारे लोग सादे रंग का कपड़ा पहने हुए हैं।

एक बिजली का तार है।

टेबल पर एक गिलास और मगे भी रखी हुई है।

साइड में एक ठो ट्रक लगा हुआ दिख रहा है।

बहुत बड़ा ग्राउंड है ये।

एक पौधा आगे है जो सूख गया है।

खिड़की खुली हुई है डी_जे भी है।

वी लीव बाय चेंज वी लीव बाय अंदर लिखा हुआ है बोर्ड में।

घर के अंदर एक डस्टबिन है जिसका रंग हरा है।

आगे क्रिश्चियन का एक एक्स जैसा लगा हुआ है।

ये बहुत बड़ा बस स्टैंड है यहां पर बहुत सारे बस है।

एच_डी_एफ_सी बैंक का फोटो है ये।

आस पास काफी आदमी है।

एंड उसका रंग हल्का ग्रीन रंग का है।

इसमें एक अलमारी जैसा है जिसमें सामान है।

घर का ऊपर टीना हैं।

इस घर में एक खिड़की है।

बैगनी रंग का एक गेट है।